इसमें बहुत बड़ा किला है कुछ लोग देख रहे हैं।

ये एक चित्र है ये इसमें बड़ा--

यह एक चित्र है इसमें बड़ा पेट्रोल पंप है बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

यह एक चित्र है जिसमें बड़ी बिल्डिंग है और बहुत से लोग दिख रहे हैं।

यह एक चित्र है इसमें बहुत से--

यह एक चित्र है इसमें कुछ दुकानें दिख रही हैं आसपास लोग भी दिख रहे हैं।

यह एक चित्र है इसमें बहुत से फूल दिख रहे हैं कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

ये एक चित्र है इसमें बड़ा मंदिर है बहुत सी पूजा की सामग्री रखी हुई दिख रही है।

येह एक चित्र है इसमें बहुत से फूल है बहुत सी दुकानें हैं बहुत से लोग भी दिख रहे हैं।

इसमें एक गाड़ी दिख रही है।

बड़े-बड़े पैर भी दिख रहे हैं।

कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।